यहाँ बर्थडे पार्टी हुई है और यहाँ सफेद और पीले कलर के पर्दे लगे हुए हैं हरी-भरी घाँस है सफेद कलर का आसमान है और --